क्रिसचन लोग के प्राथना सभा है ऊपर बैलून लाल ब्लू --

इसु मसीह के चर्च पीछे पेड़ है तल्ला है मदर मर्र्यम के पोर्ट्रेट हैं।

इ सार्थक फाऊंडेशन के है।

बहुत बड़ा किताब कॉपी की दुकान किताब की लग --

इहाँ बहुत सारा पेड़ लगल हई इ सरकारी संस्था के द्वारा --

इ मुज्जफरपुर के पार्क है।

अथी डैम बना हुआ है।

इ मछली मंडी ह और यहाँ लगे ह।

ये पार्क है ये थोड़े पेड़-पौधा हैं पार्क बनल --